यह मछली सभी आदमी खरीदकर अपने घर ले जायेंगे। इसे काटकर छानकर बनायेंगे।

अ एक घर है। यह घर काफी बड़ा है।

यह घर में सरकारी काम किया जाता है।

हाथ में बांसुरी लिए हों कृष्णजी।

यहाँ पर बोहत बहु सारे लेबर मिस्त्रीयह धुलाई के ऊपर खड़े हैं। धुलाई की हो रही है।

यह विद्यालय लोग सरकारी कहते हैं। यह अ विद्यालय में --

यह पानी के ऊपर बहुत बड़ा पुल बना गया है।

यह दुकान में कुरकुरे बिस्कीट मिक्सचर निमकि पारोटी ब्रेड एवं बतासा बहोत सारी चीज खैनी पुड़िया रखे जाते हैं।

यहाँ पर एक दुकानदार यह बेचते है। यहाँ पर सभी आदमी यह सोने चांदी खरीदने के लिए यह दुकान में आते हैं।

यह नदी के चारों तरफ से बहोत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे।